और व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में बच्चे हैं।

इसके अंदर जमीन में घास निकली हुई है।

ऊपर वॉल फुल भी ओ व्हाइट कलर के फुल भी नजर आ रहे है।

और उसके अंदर लाइटें भी लगी हैं पीली कलर की।

और लोहे का जाल भी बना हुआ है।

इनका कलर लाल है नीला है और पिंक है।

और सामने एक आदमी जाकिट पहिने ब्लैक कलर की जा रहा है।

इसके अंदर एक बड़ी सी कार खड़ी है।

बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है पीछे की ओर--

सामने की ओर दो बोर्ड लगे हुए हैं रेड कलर --

लोहे कि इस ग्रिल भी लगी हुई है।

जिसके अंदर गोल और या चौकोर टाइप में पिलर बने हुए हैं डिजाइन में।

जिसकी घासें महीन करी गईं हैं कुछ जगहों पे घास नहीं भी है।

उसी के सामने पट्टी व्हाइट कलर की डाली गई है चूने वाली।

इस दीवाल में ब्लैक कलर का पेंड हुआ है।

जिसके अंदर ग्रीन कलर के पत्तियां लगी हुई हैं।

और एक लेडिस और एक बच्चा भी है यहां पे।

बहुत बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं और ग्रीन ग्रीन पेड़ पूरे पहाड़ पे दिख रहे हैं।

इसके अंदर एक रॉड दिख रही है जो रेड कलर की लंबी सी लगी हुई है।

सामने वाले दीवार पे नीले कलर का भी पेंट हुआ है।

एक साइकिल भी नजर आ रही है इसके अंदर।

और बड़े बड़े इसके अंदर पत्थर भी दिख रहे हैं।

एक लड़का नंगे पैर खड़ा हुआ है पैंट और शल्ड में--

इसके बगल में पत्थर भी लगे हैं।

बड़ी सी है जिसके अंदर ऊपर की ओर फूल रखे हुए हैं।

अ बीच में घुमाई हुई रेलिंग लगी हुई है जो पत्थर से बनी है।

सामने की ओर एक बड़ा सा गुंबद नजर आ रहा है।

इसके अंदर एक झोपड़ी नजर आ रही है जो बड़ी सी है।

और एक क्रिश्चियन का मार्क निशान लगा हुआ है।

और फुहारा बनकर पानी भी गिर रहा है इसके अंदर।